परछाड़ीदार पेड़ हेंगे जाड़िया हेंगी यहा पे पास-पास काफी सारे पेड़ लगे हुवे है जो की ये पेड़ काफी सूखे दिख रहे है यहा पर ये पेड़ ये सभी सुख गए है।

शाम का समय हेंगा जो की काफी बड़े पेड़ लगे हुवे हेंगे काफी ऊंचे लिप्टस के लंबे पेड़ हेंगे।

पर फूटबाल खेला जा रहा हैं यहा पे का-कच्चा मैदान हैं काफी बड़ा और यहा पर जाल लगा हुआ हैंगा।

और मैदान मे घा घास उगी हुई हे हरी और यहा पर रात का समय है लाइट जल रही है स्टेडियम बना हुवा है यहा पर काफी सारे लोग बैठे --

यहा पर पार्क हेगा पार्क मे जुले लगे हुवे हेंगे सड़क पे धूप आ सड़क पे धूप आ रही है जो लाल-लाल दिख रही हेंगी किनारे पर पेड़ लगा हुवा है।

बहुत ही जादा खुब सूरत दिख रहे हें ये और मैदान है।

और पेड़ो को देख रहा है उसके पीछे भी लाइन से पेड़ लगे हुए है और उसके पीछे भी लाइन से पेड़ लगे हुए है कुछ बड़े पेड़ है।